जो की बहुत ही खुबसुरत है इस नावो में ऊपर में तथा नीचे में भी रूम बने हुए है यहाँ पे चड़ने के लिए सीढ़ी भी लगाया गया है।

यह एक दूकान है यह दूकान बहुत ही बड़ा है यहाँ पे बहुत ही प्रकार की वस्तुए मिल जाती है जैसे की कॉपी कलम--

यह एक योगा का क्लास रूम है यहाँ पे योगा कराया जाता है यहाँ पे छोटे-बड़े सभी को योगा कराए जाते हैं।

यह एक होटल है यह होटल बहुत ही बड़ी है यह होटल दिखने में भी बहुत ही खूबसुरत है इस होटल में सभी प्रकार की वैरायटीस मिल जाती --